गांधीनगर की शाखा है और इसके बाहर एक गाड़ी स्कूटी और बाइक पार्क की गई है।

यह शेल्ड बी पावर का पेट्रोल पंप है जहां पर डिजल --

और उसके आगे बहुत घना जंगल है।

और हरी भरी है घास भी लगी है और बड़े बड़े पेड़ भी हैं और यह--

की यह किसी ऑफिस के अंदर की तस्वीर है जहां पे एक कबाड में बहोत सी बुक्स रखे हैं और--

इसके सामने एक बड़ा पार्क भी है।

यहां आप देख सकते हैं कि यह मस्जिद है और इसकी इमारत बहुत ऊंची है।

महाविद्यालय है और यह बहुत ही पुराना विद्यालय--

गोलगप्पे भेल आदि बेच रहे हैं।

एस_एम_एस फिश मार्केट हैं यहाँ पे बहुत से दुकानदार कतारों में लगे हुए हैं।